और यहाँ बहुत ही दूर दूर पर हरियाली हरियाली ये पहाड़ है।

यहाँ पर एक वाइट कलर टेम्पल बनाया जिसके उसके पीछे पहाड़ ही पहाड़ है। ऊपर के साइड दूसरे साइड में ग्रीन कलर का घर बना है यहाँ --

गाड़ी भी चल रहे है एक अंकल खड़े है उम्म यहाँ पर एक येलो कलर का ठेला लगा है।

यह किसी सीईईईम मूर्ति हाउस का है यहाँ पर बहुत सारी बानी पत्थर की बानी हुई मूर्ति है मूर्ति रखी है एक जैसे मूर्ति है एक जैसे कलर की मूर्ति है ग्रे कलर की सब और सब एक जैसे बानी हुई है।

पीछे रोड पर एक घोड़े की मूर्ति बनी हुई है इस पे किसी राजा महाराजा की मूर्ति बनी हुई है जिनका हाथ में एक तलवार है और साइड में एक तीर कमान लगे हुए है।